और आसमान दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रहा है गेट दिखाई दे रहा है और दो छोटासा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

जिम मे बहोत सारे जिम की मशीन लगी हुयी दिखाई दे रही है और लाइट लगे हुए दिखाई दे रहे है टेबल खुर्ची दिखाई दे रहे है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और एक व्यक्ती है।

इस तस्वीर मे हमे एक स्टेशनरी की शॉप दिखाई दे रही है यहाँ बहोत से पेन दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर मे हमे एक डैम की तस्वीर दिखाई दे रही है जहा बहुत सारे पानी बहते हुए नजर आ रहा है। नदी--

इस तस्वीर में हमें बहुत सारे खेत तस्वीर दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है पेड पोधे दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे हमे एक एयरपोट की तस्वीर दिखाई दे रही है लाइट दिखाई दे रहा है और टाइल्स लगा हुआ दिखाई दे रहा काँच के गेट लगे हुए दिखाई दे रहे है लाइट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा वहा से कुर्सिया दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे हमे पहाड़ दिखाई दे रहा है खेत दिखाई खलयान दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे हमें सड़क दिखाई दे रहा है घास दिखाई दे रहा है झाड़ियाँ दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हमे घास दिखाई दे रहा है पहाड़ दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।